किसी का हाथ नजर आ रहा है।

और काफी सूंदर सा नजारा है।

काफी सुंदर सा नजारा हैं।

कुछ लोग दिखाई दे रहे है।